बाहर एक खंभा है उसमे टूबर्ग बियर लिख के है।

में एक बिस्तर भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में बहुत सारा बैट भी दिखाई दे रहा है।

बीच में एक बहोत बड़ा बिल्डिंग व्हाइट कलर से पेंट करते हैं।

साइड एक में एक बिल्डिंग है ग्रे कलर का ऊपर में ब्लू टीना देके है।

नदी के किनारे छोटा छोटा पत्थर लोग भी देख रहा है।

यहां में सीढी स्थित भी है।

आपको यहां में बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक आदमी टूल पे ऐसे ही बैठ रहा है।

दूर में एक बाइक पार्किंग करके है।

बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

हमको यह में एक फर्नीचर दुकान दिखाई दे रहा है।

दुकान का अंदर बहुत ज्यादा को गोदरेज दिखाई दे रहा है।

ऊपर में शाह फर्नीचर लिखकर दिखाई दे रहा है।